बहोत सारा दस पंद्रह आदमी एक नाव पे बैठा हुआ है एक चलाने वाला नाव झील में हैं और अच्छा सा मौसम दिख रहा है।